ये एक दुकान है जनरल स्टोर और बुक मिलते है पे बाकी सारा सामान भी मिलता हैं।

स्टेशनरी शॉप है। जहाँ पे पेन पेन्सिल रबर इरेज़र सब--

किसी तस्वीर चिल्ड्रन बुक्स डिपो की है जहाँ पर बुकें मिलती हैं मगर यहाँ पर आपको खाने-पीने का सामान भी मिल जाता है।

ये ए_टी_एम बैंक की तस्वीर है स्टेट बैंक ए_टी_एम कीयहा पे लोग ए_टी_एम से पैसा निकालते है।

ये मार्केट की तस्वीर है ये किसी दुकान की तस्वीर है जहाँ पर खाने-पीने का सामान मिलता है क्या दुकान है ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है।

एक कार रिपेयर वर्कशॉप की दुकान है यहाँ पे ये जो अंकल जी है वो कार रिपेयर कर रहे है और जैसे की आपको दिख रहा होगा वो टायर रिपेयर कर रहे हैं।

कोई दिक्कत कोई मशक न हो लोगो को इस लिए ये बनाया गया है।

क्लीनअप कराते हैं मैनीक्योर कराते हैं पेडीक्योर कराते हैं।

ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी ये तस्वीर मंदिर के बाहर की तस्वीर है अंदर मंदिर है सब दर्शन करने के लिए भगवान का यहां पे आए है दूर-दूर से कितनी भीड़ होती है मंदिरों में--